यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा कई सारे बलून दिखाई दे रहे है कई सारी लाइट --

और कई सारी कार दिखाई दे रही हैं | यहाँ पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं | कुछ बाइक दिखाई दे रही है और कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे--

कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे --

दिखाई दे रहा है एक कुछ फर्नीचर दिखाई दे रहा है। जिसका कलर वाइट दिखाई दे रहा है और कुछ काँच दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पर और कुछ मशीनें दिखाई दे --